हह मोटर रखा हुआ है जो कि हरे रंग का है.

वहाँ पे एक आदमी भी खड़ा है जिसने की नीले रंग की शर्ट पहनी हुई है.

हमें इस तस्वीर में एक गार्डन दिखाई दे रहा है जिसमें छोटे-छोटे पेड़ दिखाई दे रहे हैं.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

इसमें एक औरत जो कि सब्जी लेते हुए दिखाई दे रही है.

हमें इस तस्वीर में कर्नाटका बैंक का दृश्य दिखाई दे रहा है.

जिसके बाहार बहोत सारी गाड़ियां लगी हुई है.

जिसमें से एक गाड़ी का रंग ब्लू है जो कि हमें अस्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है.

हमें इस तस्वीर में एक नदी दिखाई दे रही है जिसके किनारे पे पेड़ लगा हुआ है.

नदी में कुछ रखता हुआ दिखाई दे रहा है.

हमें इस तस्वीर में एक पुरानी इमारत दिखाई दे रही है जिसका रंग सफेद है.

इमारत भी नजर आ रहा है.

हमें इस तस्वीर में एक पुरानी एस_बी_आई का ए_टी_एम दिखाई दे रहा है.

जिसमें से एक गाड़ी जिसका रंग ब्लू है वो कि हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है.

उस पे एक आदमी जो की फोन चलाता हुआ नजर आ रहा है.

और एक आदमी जो कि गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ है उसने हरा कलर का शर्ट पहना है।

और बहुत सुंदर लग रही है।

इस चित्र में हमें एक कॉफी शॉप दिख रहा है जिसके ऊपर चोको लाइन कॉफी लिखा हुआ है।

इस चोको लाइन कॉफी में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं।

इस दुकान में लगी लाइट रंग बिरंगे के प्रकाश दे रहे हैं।

हमें इस चित्र में एक कमरा दिखाया जा रहा है जिसमें कुछ लड़का और लड़कियां बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं।

हमें इस चित्र में एक सुपरमार्ट दिख रहा है जिसका रंग गुलाबी है।

कुछ पेर भी लगे हुए हैं।

सड़क के किनारे पे एक घर है जिसका रंग सफेद है।

इस तस्वीर में एक मैदान दिख रहा है।

मैदान में कुछ घास भी दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें एक पेट्रोल पंप दिख रहा है।

और पेट्रोल पंप के बाहर एक गाड़ी लगी हुई है जिसका रंग उजला है।

इस तस्वीर में हमें एक मैदान दिख रहा है।

इस तस्वीर में हमें एक बड़ा इमारत दिख रहा है।

जिसमें तरह-तरह के राखी लटके हुए हैं।

और वह फोन में कुछ देख रहा है।

कमरे का रंग उजला है।

इस तस्वीर में हमें एक कच्ची सड़क दिख रहा है।

रिक्शा का रंग लाल और ब्लू है।

और सामान भी देख रहा है।

जो कि उजला कलर का कपड़ा पहना है।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

गाड़ी का दो पहिया जो कि हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में हमें एक पेट्रोल पंप दिख रहा है।

पेट्रोल पंप के पास कुछ लोग हैं जो तेल लेने आए हैं।

झूलों पे बच्चे झूला झूल रहे हैं।

कमरे में कुछ सामानें रखी हुई है जिसका रंग उजला और काला है।

इस चित्र में हमें एक मिठाई का दुकान दिख रहा है।

वहीं दुकान में कुछ लाइटें भी लगी हुई है।

हमें इस तस्वीर में एक पहाड़ी इलाका दिख रहा है।

इस पिक्चर में हमें एक रूम दिख रहा है जिसका रंग सफेद और पीला है।

रूम के अंदर कुछ लड़कियाँ एक्सरसाइज करती हुई दिखाई दे रही है।

जिनमें से एक लड़की काला कलर की टी-शर्ट पेहनी है और एक लड़की लाल रंग की।

जिसमें बहुत सारे तरह-तरह के कपड़े रखे हुए हैं दुकान का रंग सफ़ेद है।

और एक आदमी है जो कि फोन पे कुछ देख रहा है।